वाह क्या अदृश्य सिनारो है दो बड़े बड़े नारियल के पेड़ है बाजू में एक छोटा सा तालाब है और रोड भी है अंधेरा है सूर्यास्त हो रहा है।

एंट्री पॉइंट है बिल्डिंग दो माले का खड़ा है नीट एंड क्लीन है बहोत अच्छा लग रहा है पेड़ भी है ग्रीनरी है साइड में दो झंडा भी लगा है।

पूल है ग्रील है और साइड में छोटा सा होटल भी लग रहा है तो यहां पे लोग बैठ के खाना भी खा रहे हैं और ऐसे सीन में बैठ के खाना खाने का मजा ही कुछ और है।